सब कपड़े मिल जाते हैं। यहाँ पे बहोत सारे आदमी खरीदारी करने के लिये आते हैं। यहाँ पे बहोत अच्छी क्वॉलिटी के कपड़े मिलते हैं।

लगे हुए हैं। बहोत सारे आदमी यहाँ पे नृत्य देखने के लिये बैठे --

एक बड़ा सा नदी है। नदी के चारों ओर बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे।

मॉल है। इस मॉल में बोहोत सारे --